यहाँ भाई को देख रहे है। निस्टकॉफी पकड़े हुए है हाथ में और अच्छी मस्त है।

यह बोनेट देख रहे होंगे आप --

रंगीन रंगीन आप देख रहे होंगे फूल और अ अ पीला भी है।

पलंग भी डले हुए हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर्दे भी लगे हुए हैं। मस्त एसी भी है। पंखा भी लगा हुआ है। लाइट भी है।